ऊपर देखने पे यहाँ पर पेड़ की पत्तियां दिखाई दे रही हैं दिन का समय है अंदर जाने का रास्ता दिखाई दे रहा हैं।

आकृतिया बनी हुई है नीले देख पर ये नीले रंग की दिवार है जिस पर खिड़किया बनी हुई है खिड़कियों पे गेट चढ़े हुए है और भी आकृतियाँ बनी हुई है।

नीचे की तरफ दुकान में शीशा लगा हुआ है शीशे से अन्दर का दृश्य दिखाई दे रहा है जिस पे कुछ लिखा हुआ है कुर्सियाँ पड़ी है दुकान के बाहर भी एक कुर्सी पड़ी है जो कि लाल रंग की है एक आदमी खड़ा हुआ --

और एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान के बाहर रैक लगी हुई है रैक्स पर शीशा लगा हुआ है जिसपे कुछ लिखा हुआ है अन्दर सामान दिख लगा हुआ दिखाई दे रहा है अन्दर एक सिलाई मशीन रखी है जोकि एक सफ़ेद कलर की मेज पर रखी हुई है सिलाई मशीन के बीच में एक --

कमरा है कमरे में बीच में मेज रखी है मेज पर सफ़ेद कलर का कपड़ा लखा लगा हुआ है चारों तरफ कुर्सियाँ लगी हुई है कुर्सियों पे लाल कलर की गद्दी लगी हुई है पीछे की तरफ गेट दिखाई दे रहा है।

ऊपर छत दिखाई दे रही है छत पर पंखे लगे हुए है दिवार पर आकृतियाँ बनी हुई है और भी मेज रखी है मेज के आगे कुर्सियाँ रखी हुई है और गिलास रखी हुई हैं।